सामने एक ग्रीन कलर का बिल्डिंग है और उसके सामने हरा-भरा पेड़-पौधे दिख रहे है बगल मे एक खम्भा है।

शाम का समय है बहुत सारे बच्चे एक बड़े ग्राउंड में खेल रहे हैं कोई क्रिकेट खेल रहा है कोई फुटबॉल खेल रहा है कोई-कोई आपस मे बातचीत कर रहे हैं।

कपड़ा का एक दुकान है। यहाँ पे शर्ट पेंट का कपड़ा रखा गया है। इस दुकान में बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे --

और बिजली सप्लाई होगा इस पाइप से। कोई खतरा नहीं होगा बच्चों को किसी को भी। तार इधर-उधर नहीं रहेगा। तार छत के अंदर रहेगा।

यहाँ पे यात्रियों के बैठने के लिए चेयर भी लगा है। यहाँ पे सारी ट्रेन रूकती है।

यह एक नदी है नदी मे बाढ़ आ गया है।